ये दृश्य एक दवाइओ का दुकान का दृश्य है।

और तलाब के बिच में हमें तीन किस्तियां नजर आ रही हैं।

इस दृश्य में हमें पानी का तालाब कई हरे भरे पेड़-पौधे --

और कुछ इमारते भी इस दृश्य में दर्शाई जा रही हैं।